इसमें तिन आदमी खड़े हुए है हाथ पक एक दुसरे के हाथ पकडे हुए है और सर्किल बनाया हुआ है इन लोगों ने और ये तीनो टीशर्ट पहने हुए है।

एन्ट्री गेट बना रखा है कुछ आदमी यहा पे खड़े हुए है और इस दुकान के बहार दो बाइक्स भी खड़ी हुई है।

इसके पर एक आदमी है जो के काउंटर पे खड़ा हुआ है जिसने टीशर्ट और पैंट पहनी रखी है और खुच बल्ब यहां पर लटके हुए है मछली के ऊपर रौशनी दाल रहे है।

इस तस्वीर में कुछ लोग मछली बेच रहे है निचे जमीन पर बेह कर कुछ लोग खड़े हुए है और इनके पास खाफ--

बीच में एक बड़ी सी बिल्डिग है जिसमे काफी सारी खिड़कियाँ दरवाज़े नज़र आ रहे--

और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने उल्टा कैप लगा रखा है टीशर्ट और लोअर पहना हुआ है और इसने चष्मा भी लगा रखा है। यह हाथ में एक रेड कलर का पट्टा भी बंधा है |

तस्वीर में एक हॉल है बड़ा सा जिसमे कुछ डॉक्टर्स नजर आ रहे है जिन्होंने यूनिफार्म पहन रखा है मुह पे मास्क लगा रखा है चश्मा लगा रखा है ऊपर--

इस तस्वीर में एक बड़ी सी नदी है जिसपे एक पुल नज़र आ रहा है पुल पे कुछ सेटेलाइट्स भी लगी हुई है इस नदी में कुछ नाव भी है।